जिसके चारों तरफ छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं।

पीलर पर व्हाइट कलर का पंखा लगा हुआ है।

है जहां पढ़ाई की सभी जरूरत होने वाली चीजें मिलती है।

ऊपर में बहुत सारे लाइट पर्दे और पौधे लगाए हुए हैं।

स्विमिंग पूल के बगल में कुछ सामान पड़ा हुआ है।

इसके ऊपर टिशू पेपर रखा हुआ है।

नीचे में आठ टूल्स भी लगे हुए हैं।

यहां दो बड़े बड़े घड़ी भी लगे हुए हैं।

यह एक डैम की तस्वीर है।

डैम का पानी बहुत ही गहरा नजर दिखाई पड़ रहा है।

उसके आगे एक कस्टमर खड़ा हुआ है।

जिसके ऊपर टिशु पेपर रखा हुआ है।

कार्यालय के आगे बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं।

और ये तीन कछुए पानी के बाहर टहल रहे है।

अगल बगल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

बाउंड्री में आधा ईंट का दिवाला और आधा लोहे की ग्रिल लगी हुई है।

जिसमें हीरो स्प्रिंट लिखा हुआ है।